ऊपर कुछ खिड़कियां भी है नीचे बहुत बड़ा दरवाजा है और यहां कुछ हो रहा होगा पार्टी का--

इसमें बहुत-बहुत बड़ा बड़ा सब लगड़ा है बहुत बड़ा मॉल है इसमें कुछ झोला ए सब मिलता है बच्चा का--

और वहां पर सब तैयार होके बहुत बच्चे बैठ रहे हैं कि हमको जाना है घर और लॉन्च हो चुका होगा और इधर--

चार्ज करने के लिए ऊपर कुछ बाज का लगाया हुआ है मछतानुस दानी लगाने के लिए--

बहुत बड़ा फैक्ट्री लग रहा है और सामने ब्लू कलर क कलर किया गया बैंच में लगा गया--